इन्होंने साड़ी पहन रखी है और वो हाथ जोडे चल रही है।

चित्र में एक नदी दिख रही है।

और उसके सामने काले बोर्ड पे कर्क रेखा लिखी हुई है।

टेबल कुर्सी और बलून सजी हुई दिख रहे हैं ग्लास एंट्री है अंदर भी कुछ लोग दिख रहे हैं।

पत्थरों के बीचो में बैठे हुए हैं दो बतख सफेद और दो भूरे रंग के दिखाई पड़ रहे हैं।

एक सीढ़ी है उसके ऊपर एक दो बच्चे खेल रहे है।

सामने एक छोटा सा पार्क है और के लिए भी जगह बनाई हुई है।

भारती स्टेट बैंक ऑफ़ ए_टी_एम भी लिखा हुआ है।

दिवाल पे पतंजलि टेस्टी नमकीन लिखा हुआ है और गुब्बारे से सजाया--

चित्र में एक शोरूम का दृश्य है जहां काफी रंग बिरंगी स्कूटीयां रखी हुई है।

पीछे दीवार पे पोस्टर लगे हुए हैं।

जो गुम्मद नुकार बना हुआ है।

एक व्यक्ति बनियान पर खड़ा है दो युवतियां नहा रही है।

नीचे फर्श पे मार्बल लगे हुए हैं बैठने की जगह भी है।

दिखाई दे रहा है काफी पेड़ पौधे भी दिखाई पड़ रहे हैं।

नीचे लोहे की डंबल भी दिखाई पड़ रहे हैं मैंट भी बिछा हुआ है।

चित्र में एक साइकिल की दुकान का दृश्य है जहां काफी रंग बिरंगी साइकिल रखी हुई है।

कुछ दूरी पे एक दो कुर्सियां रखी हुई है टेबल रखे हुए हैं।

मार्वल से बने हुए हॉल में सामने एक व्यक्ति टोपी पहन के बैठा हुआ है।

पार्किंग में कुछ बाईकें दिखाई पड़ रही है कुछ लोग रस्ते पे जाते हुए दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में एयरपोर्ट टर्मिनल का दृश्य है।

और कुछ रेक्स बने हुए यहां पे कुछ बॉटले भी रखी हुई हैं।

ली रंग की बॉर्डर वाली लाइट भी जल रही है।

उस मकान के सामने कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई पड़ रहे हैं उसमें कुछ महिलाएं भी हैं।

सफेद रंग की बिल्डिंग है ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है।

ये फूलों से और स्टैंडो से काफी खूबसूरत सजाया गया है।

आस पास काफी खूबसूरती से लाइटों और फूलों से सजाया गया है।